वह हाथ में एक तगाड़ी लिए हुए है।

ग्राउंड का दृश्य है इस ग्राउंड के चारों तरफ में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस कमरे में ढेर सारे लोग भी हैं।

जो कि नया नया कपड़ा पहन कर खड़ा है।

और गर्दन में गमछा लिया हुआ है।

यह एक कमरे का दृश्य है इस कमरे की दीवार की कलर पर्पल है।

ऑरेंज कलर का शर्ट और ग्रे कलर का जींस पहना हुआ है।

दूसरे तरफ पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

और ए_टी_एम का कलर ब्लैक है।

यह एक हरिन का दृश्य है और हरिन का कलर ब्राउन है कहीं कहीं येलो कलर भी है।

और इस किराना दुकान के अंदर में एक फ्रीजर भी रखा हुआ है।

यह एक कपड़ा दुकान का दृश्य है इस कपड़ा दुकान की दीवार का कलर व्हाइट है।

इस दुकान में ढेर सारा अलमारी बनाया हुआ है और अलमारी में शीशा लगाया हुआ है।

इस ग्राउंड में दो पुलिस भी हैं।

ऊपर में करकट लगाया हुआ है।

जो कि व्हाइट और ऑरेंज कलर का है।

और ऑरेंज है और कहीं कहीं तो मिक्स कलर भी किया हुआ है।

घर के चारों तरफ में वाइट कलर का बाउंड्री किया हुआ है।

यह एक कार पार्किंग का दृश्य है यहां पर ढेर सारा कार पार्क किया हुआ है दूसरे तरफ में बाइक भी पार्क किया हुआ है।

कहीं कहीं में पोल गाड़ा हुआ है।

यहां पर कुर्सियों में ढ़ेर सारा डिजाइन भी बनाया हुआ है।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

वहीं पर ब्लैक कलर का कार्पेट भी रखा हुआ है।

और इस कमरे में एक अलमीरा लगाया हुआ है जो की लोहे का है और ब्लैक कलर का है।

और अलमीरे के ऊपर में छोटा छोटा डब्बा रखा हुआ है।

चार्जिंग करने वाला डब्बा भी रखा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है इस दुकान की दीवार का कलर व्हाइट है और सीलिंग भी वाइट कलर से किया गया है।

और दो तीन अलमारी भी रखा हुआ है।

झील की दूसरी तरफ में बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहां पर एक सीढ़ी भी लगाया हुआ है।

और नीचे में बाउंड्री पर रेड और ग्रे कलर किया हुआ है।

और शोरूम के नीचे मे ब्लैक कलर का टाइल्स भी लगा हुआ है।

स्टेज पर ढेर सारा लाइट लगाया हुआ है।

बोर्ड पर प्रेम इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ है।

और नदी के किनारे किनारे घास फूस भी लगा हुआ है।